यह एक पेट्रोल पंप है जहाँ दो टेंक है ये सफ़ेद और नीले रंग का है।

ऊपर स्ट्रीट कलरफुल लाइट्स हैं एक महिला सामने से निकलती हुई दिखाई दे रही है सामने सफ़ेद रंग की एक गाड़ी खड़ी हुई है।